और यहाँ पे जो दीवारे हैं वो नीले रंग --

और सामने की दिवार भी मटमैले रंग की दिख रही हैं मुझे --

वो पक्की रोड है स्लेटी रंग की जिस में सफ़ेद पट्टी पड़ी हुई है पास में बाइक खड़ी है दो --

और एक बिल्डिंग बनी हैं जो गुलाबी रंग की हैं जिसके बाहर सज़ा हुआ हैं फूलो से --

स्पीकर लगे हैं काले रंग के यहाँ पे कुछ चेयर पड़ी हुई हैं जो भूरे रंग की हैं जिस पे कुछ लोग बैठे भी हुए हैं।

यहाँ की जो फ़र्श हैं वो नारंगी रंग की दिख रही हैं और उपर लाइट भी लगी हुई हैं।

इन्होंने सर पे एक मुकट भी पहन रखा --

इस स्टेज पर एक औरत खड़ी है हरे रंग की साड़ी पहन के --